और हर ड्रॉवर में कुछ सामान पड़ा हुआ--

उसके सामने दो कुर्सियां रखी हुई है।

सामने दो लड़के हैं जिन्होंने पिट्ठू बैग पहने हुए हैं।

पीछे येलो सूट में एक लेडी खड़ी है।

सामने एक वाइट कलर का दरवाजा भी है।

ये एक ग्रीन कलर की दीवार लग रही हैं।

जिस पर सेल्फ बनी हुई है डिजाइन दार।

एक लड़का पीले कपड़े में बाहर इधर जा रहा है।

एक लाल रंग का सिलेंडर खड़ा हुआ है।

और एक दूसरे लड़के को देख रहा--

जिस पे एक आदमी लाल रंग की कमीज पहने खड़ा है।

जोहवां पर कुछ सामान पड़ा हुआ है।

साइड मे ऑरेंज कलर का कपड़ा तार से टंगा है।

दीवार पर कुछ पोस्टर लगे हैं एक गणेश का लगा है एक मोटू पतलू का लगा है।